यह सब लोग बैठ के खाना खा रहे है सब के हाथ में खाने के प्लेट्स हैं बहुत लोग कुछ खड़े हुए है कुछ बैठ के खाना खा रहे हैं एक हॉल रूम में।

ये एक बड्डे पार्टी लग रही है| एक केक है सामने और बच्चे का बड्डे है। उसको उसके पेरेंट्स ने गोदी में लेक लेके खड़े हैं।

कुछ ऑटो खाली हैं | कुछ में पैसेंजेर्स हैं | पीछे एक पार्किंग स्टैंड है जहां पे बोहोत सारी बाइक पार्क की गई हैं । का पोल है | बोहोत सारे --